यहां पर आसमान में बादल भी छाए हुए दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक सैलून दिखाई दे रहा है सैलून में बहुत सारे सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक --